ये कैफे बहुत ही अच्छा ही है यहां बहुत सारे क्लाइंट्स वगेरा उपलब्ध है बहुत सारे विद्यार्थी यहां पे ऑनलाइन कराने के लिए आते है।

कार कार का स्टैंड है यहां सभी जगह जाने के लिए भाड़े पे कार मिलता है। और बहुत ही सुविधाजनक है बहुत उचित मूल्य पर मिलता है।

ये शिक्षक बहुत ही प्रतिभाशाली है बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही नेक हैं।